यहाँ पर ई-रिक्शा स्पेयर पार्ट्स सेल सर्विस बेटरी चार्ज कंट्रोल मोटर इ_टी_सी सभी यहां पर बिकते है।

यह एक बैंक हैं । यह बैंक में बहुत से लोग आए हैं।